इसमें ऊपर में दीवाल में चार पांच रकम का पोस्टर छपे हुए हैं.

वह सामने में एक कैलेंडर भी लगा हुआ है उसके अंदर तीन आदमी बैठे हुए हैं ए --

सामने एक फूल वाला पेड़ दिख रहे हैं और साइड में पूरा वाला तालाब दिख रहे हैं.

यह आयेगी स्टेशनीर का दूकान है यहाँ--

यहाँ सभी प्रकार के किताब पेन पेन्सिल सभी चीज मिलती उपलब्ध हे.

और आगे की ओर बहुत बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे--

यह एक बंगला है जिसमें व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है.

उसके सामने में पानी भी नजर आ रहे हैं एकदम हरियाली--

खड़े हुए भी है और हर कुर्सी में येलो कलर के पर्दे भी लगाए गए हैं.

सोप भी रखे गए है उसका बगल में एक जग है एक गिलास भी है।

उसमें एक आदमी अंदर की ओर जा रहे है जो ग्रीन शर्ट पहने हुए हैं.

और सामने में बहुत-बहुत बड़े छोटे-छोटे छेद भी हैं.

दो अ दो व पहरेदार भी बैठे हुए हैं.

कुछ गार्नियर भी मौजूद हैं.

अ ब पोंड्स भी है बोरो प्लस भी हे नोरतन तेल भी हे.

जे एक दूकान है जिस ज जिसमे एक स सीढ़ी भी रखा हुआ है.

यहां पे नदी के ऊपर में एक पूल दिखाई दे रहा है.

यह एक रूम है जिसमें एक डबल बेड का चौकी लगा हुआ हैं एक सिंगल बेड का चौकी लगा हुआ है.

दोनो हाथ उपर की और है सभी एक पोजिशन में खड़े हुए हैं. औ--

फ्रूटी है कैडबरी चॉकलेट भी है.

यह देओघर मे स्थित हे देओघर कॉलेज का ये फील्ड नजर आ रहे हे पी--

पीछे तरफ घ-घर दिख रहे हे उसका पीछे एक मंदिर दिख रहे है.

सामने समूह किसी साइड साइड में बगीचे फूल भी लगाए गए हैं।

यहाँ पर सभी बेसिन तथा बाथरूम की सब का टाइल्स मार्बल वाले मिलते हैं.

यह एक मंदिर है इसमें ऊपर में रेड और ग्रीन कलर का झंडा स- स-लगा हुआ है.

और लोहे को रगड़ रहे हे मोटर लगा हुआ हे.

यह बहुत ही र रस्ता अच्छा से बनाया गया रेड और येलो कलर संगमरमर पर पत्थर देकर बनाया गया है.

ऊपर में हिंदुस्तान का झंडा छोटा छोटा बहुत लगा हुआ है।

और ऊपर में लिखा है अनुपम पैलेस ।

बोहोत प्रकार के आदमी यहाँ नजर आ रहे हे.